इस द्रश्य मे हमें एक बस दिख रहा है बस चमचमा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे की ये नया-नया लिया गया हो।

और कुछ लोग बस के अंदर जा रहे हैं यहाँ पर हमें पीछे पेड़ भी देखने को मिल रहा है।

साथ ही साथ हमें कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी नज़र आ रहें हैं।

कुछ बिस्कीट पैकेट में रखीं है तो कुछ डिब्बों में है। यहां पर प्यालियों को सजा कर रखा गया है साथ ही साथ हमे कई बोतल भी देखने को मिल रहा है और एक डस्टबिन भी देखने को मिल रहा है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे की इस लड़की को एक बड़े से परदे में दिखाया जा रहा है ताकि सब लोग देख सके--

बाहर खड़ा हुआ नजर आ रहा है जहाँ पर हमें बहोत सारे पोस्टर भी नजर आ रहै हैं।

इसने बहोत सारे पेन रखे हैं साथ ही साथ हम देख सकते हैं ग्राहक भी वहीं पर खड़ा है ब्लू पेन लिए।